सामने काले और हरे रंग के अंगूर के बड़े बड़े ढेर हैं।

यहां टेबल पे रखा हुआ केक भी नजर आ रहा है।

यह फोटो एक आधुनिक इमा-इमारत के गलियारों की है।

उत सारे लाइटे जलते हुए नजर आ रही--

यहां बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं ।

यह तस्वीर रात के समय की लग रही है।

यह हेलीपैड बहोत ही लंबा चौड़ा नजर आ रहा है।

यहां बैठने के लिए जगह बनाए गए हैं।

यह तस्वीर एक शहरी इलाके की लग रही है।

चित्र में एक चर्च में एकत्रित लोग नजर आ रहे हैं।

एक बैठा हुआ नजर आ रहा है।

दो पीली बस खड़े हैं।

इस कार के बहुत सारे पार्ट पुर्जे खुले हुए दिख रहे हैं।

इस मॉल में लाइट जलती हुई नजर आ रही है।